जहा पे नीले रंग के चैयर्स है थिएटर की जो पूरे खाली है उपर की तरफ लाइटे जल रही है दीवारों का रंग सफ़ेद और नीला है।

इस चित्र मे एक घर की तस्वीर है घर के बाहर लोहे का कंपाऊंड बनाया गया है दीवारों का रंग जो है हरा है।

यहा पे बहुत सारे अपार्टमेंन्ट्स है एक बड़ासा कम्पाउण्ड है।

जहा पे छोटी-छोटी दो मूर्तिया भी है जो की एक छोटासा स्विमिंग पूल के ऊपर खडाया गया है पीछे की तरफ़ एक घर है।